और ये जो ग्राउंड होते हैं इसमें हम जाके अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं बहुत ही --

और बाइक में एक पीछे हेलमेट भी लगा गया है जाली पे एक फ्लेक्सिबल है --